और पानी एकदम बहोत साफ एकदम व्हाइट है।

ये एक प्लांट्स का शॉप है यहां पे बहोत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए है और यहां पे छोटे प्लांट्स भी है।

और उसके सामने गाड़िया भी है और ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

यहां पे बड़े आसमान दिख रहा है आजू बाजू बहोत सारे लोग हैं और यहां पे ब्लू कलर का आसमान है बहोत सारी लाइटिंग भी की गई और यहां पे भी है।

ये बड़ा सा एक ग्राउंड है और इसमें कचरा भी है और आजू-बाजू बड़े-बड़े बिल्डिंगा भी है और बड़े-बड़े पेड़ भी है।